दिख रहा है सामने कुछ दवाइयां दिख रही है और कुछ जड़ी बूटियां दिख रही है और एक --

यहां एक कार्यालय बनाया गया है और इसके ऊपर बोर्ड लगाया गया है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय।

कार्टून लिपड़ी हुई है सामने कुछ समान पड़ा हुआ है कलर्स के डिब्बे पड़े हुए है और नीचे टाइल्स भी लगाई हुई है सामने --

बच्चियां जिन रंगोली बना रही हैं बहुत बच्चियां बैठी हुई है जिन्हे कलर्स में कटोरी में डाल के--

और बहोत सारे लोग जा रहे हैं ट्रेन के अंदर दो ट्रेन चार्ट होकर बाहर जाने वाली है।

यहां एक लाइब्रेरी दिख रही है जो की बुक्स भी खानो मे रखी हुई है लाइट्स भी लगाई हुई है चेयर्स भी लगाई हुई है।

और ऊपर कुछ मंदिर जैसा बनाया हुआ है पास में बिल्डिंग्स भी है और एक इन्वर्टर भी दिख रहा है और वायर भी दिख रही हैं।

और रेड साड़ी पहन रखा है दुपट्टा ओढ़ रखा है और सामने कुछ बच्चे और बैठे है --

मैं यहां एक रास्ता देख रहा है जिसपे ब्लॉक लगाए हुए हैं थोड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है और कुछ आदमी जा रहे हैं सामने एक पानी की टंकी भी दिख रही है।

एक गाड़ी भी दिख रही है एक बाइक भी दिख रही है एक खंभा भी दिख रहा है एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके बाहर एक मोखी भी लगाई हुई है।

हमें यहां एक दुकान दिख रही है जिसके अंदर बहुत सारा समान पड़ा हुआ है बाहर कुछ कट्टे भी समान से भरे हुए हैं।